यहां पे है दो भैंसे हैं जो यहां पे बड़ी है एक छोटी है काले कलर के भैंस है उन्हें बंदाया गया है रस्सी से।

और काले कलर के चेहरे यहां पे लिखा है काला या टिका।

मेरा हुआ है कि एक लेडी वहां से हो रही है।

यहां पे एक बड़ासा ग्राउन्ड है।